नमस्कार characteristics of sound waves पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न दिखायेंगे:
और दिखायेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ: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
सबसे पहले ध्वनि की परिभाषा से शुरू करते हैं ध्वनि वो कम्पन है जो दबाव और स्थानांतरण की एक सुनी जाने वाली यांत्रिकी तरंग की तरह फैलती है
इसे फैलने के लिए एक माध्यम की ज़रुरत होती है माध्यम वायु जल या धातु की कोई भी सतह हो सकता है
इस tutorial में ध्वनि तरंगों के चारित्रिक लक्षणों यानि characteristics को दिखाने के लिए हम विभिन्न परिक्षण करेंगे
अब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति दिखाने के लिए एक परिक्षण हैं
इस परिक्षण में ground gnd piezo buzzer piezo से जोड़ा गया है piezo buzzer piezo sqr1 से जोड़ा गया है
microphone mic a1 से जोड़ा गया है यहाँ piezo buzzer piezo ध्वनि का स्रोत है यह सर्किट डायग्राम है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर setting square waves में आवृत्ति को 3500hz set करें
sqr1 check box पर click करें sqr1 की आवृत्ति 3500hz set की गयी है एक अंकीकृत यानि digitized ध्वनि तरंग बनती है
वेव फॉर्म को बदलने के लिए frequency slider को खिसकाएँ
sq1 पर click करें और ch2 तक खींचें sq1 का input data ch2 को निर्दिष्ट किया data है एक square wave बनती है
compressions और rearfractions शुरू करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ
ch2 पर click करें और fit तक खींचें दायीं तरफ sq1 की voltage और आवृत्ति दिखती है
ध्वनि तरंगों को शुरू करने के लिए frequency slider खिसकाएँ
piezo buzzer से उत्पन्न हुई ध्वनि तरंग काले रंग में दिखती है
जब piezo buzzer को mic से क्रमशः पास और दूर ले जाया जाता है तो तरंग का आयाम बदलता है
अब हम piezo buzzer का frequency आवृत्ति response दिखायेंगे
plot window पर experiments button पर click करें select experiment सूची खुलती है सूची से frequency response पर click करें
दो नयी windows audio frequency response curve और schematic खुलती हैं schematic windows परिक्षण का circuit diagram दिखाती है
audio frequency response curve window पर start button पर click करें
piezo buzzer का frequency response शुरू होता है frequency response 3700hz पर अधिकतम आयाम रखता है
उसी window पर grace button पर click करें grace window frequency response curve दिखाते हुए खुलती है
अब हम ध्वनि के स्रोत की गति मापेंगे
plot window पर experiments button पर click करें
दो नयी विन्डोज़ eyes junior: velocity of sound और schematic खुलती हैं schematic windows परिक्षण का circuit diagram दिखाती है
eyes junior: velocity of sound window पर measure phase button पर click करें
हम mic और piezo buzzer के बीच दूरी बदलकर भिन्नभिन्न phase values प्राप्त कर सकते हैं
भिन्नभिन्न phase values प्राप्त करने के लिए measure phase button पर click करें
अनेक phase values से ध्वनि की गति की गणना करने के लिए हम 178deg और 106deg उपयोग करेंगे
2cm ये values प्राप्त कर सकते हैं जब piezo mic के पास और 2cm दूर रखा जाता है
एकदम सही परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित कर लें कि mic और piezo buzzer समान axis पर रखे जाते हैं
ध्वनि की गति की value की गणना करने के लिए हमारे पास formula प्रदर्शित है
एक नियत कार्य में ध्वनि की wavelength यानि तरंगदैर्ध्य की गणना करें formula: λ = v/f lambda = v upon f
अब हम निम्न दिखायेंगे:
परीक्षणों में grace plots दिखाने के लिए
निश्चित कर लें कि आपने अपने सिस्टम पर निम्न संस्थापित कर लिया हो:
इस परिक्षण में हम ध्वनि के स्रोत के रूप में दो piezo buzzers उपयोग करते हैं
इस परिक्षण में piezo 1 sqr1 और ground gnd से जोड़ा गया है piezo 2 sqr2 और ground gnd से जोड़ा गया है यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर आवृत्ति को 3500hz set करें
sqr1 और sqr2 checkboxes पर click करें sqr1 और sqr2 की आवृत्ति 3500hz पर set की गयी है
एक अंकीकृत digitized ध्वनि तरंग बनती है
waveform को बदलने के लिए frequency slider को खिसकाएँ
experiments button पर click करें और interference of sound चुनें eyes: interference of sound window खुलती है
window में नीचे ns जो number of samples है की value बदलकर 1000 करें
sqr1 और sqr2 checkboxes पर click करें start button पर click करें interference pattern दिखता है
अब xmgrace button पर click करें grace pattern के साथ एक नयी window खुलती है
अब हम beats pattern दिखायेंगे
experiments button पर click करें और interference of sound चुनें
window में नीचे sqr1 और sqr2 checkboxes पर click करें
start button पर click करें beats pattern दिखता है
अब xmgrace button पर click करें grace pattern के साथ एक नयी window खुलती है
fft पर click करें fourier transform के साथ एक नयी window खुलती है
fourier transform के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस webpage पर जाएँ
अब एक कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग दिखाने के लिए एक परिक्षण करते हैं यह circuit diagram है
experiments button पर click करें और interference of sound चुनें eyes: interference of sound window खुलती है
window में नीचे sqr1 की value को 100 करें और box को check करें
start button पर click करें एक कम आयाम का तरंग दिखता है
fourier transform का एक grace plot प्राप्त करने के लिए fft पर click करें
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न दिखाया:
और दिखाया:
एक नियत कार्य में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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict के द्वारा निधिबद्ध है
आई आई बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद